यहा पर एक लंबा सड़क दिख रहा है जिसके नीचे में पत्थरों कों डिजाइन से सड़क जैसा बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा हैं।

यहाँ पर एक सड़क जैसा दिख रहा है जो नीचे मे ईटों से बना हुआ है सड़क जो बहुत ही अच्छा लग रहा है साफ़ है साइड मे एक बडासा दरवाजा है जो लोहे का है मंदिर जैसा बना हैं साइड मे।

पानी ब्लू कलर का दिख रहा है यहा पे दो पाइप लगा हुआ है लोहे का है सामने बहुत बड़ा सा एक पेड़ दिख रहा है।

यहा पर कुछ हाथी बना हुआ है जो पत्थरोसे मूर्ति जैसा बनाया है सभी के सूंड से पानी फुआड़ा जा जाता है दिखाई दे रहा है यहा पे कुछ हरी-हरी घासे लगी हुई है।

यहा पर स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसमे बोहत पानी भारा है जो ब्लू कलर का दिख रहा है पानी बहुत अच्छा दिख रहा है.

बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है हरे हरे पत्ते लगे है कुछ काला काला दिख रहा है एक लाइट वाला बडासा खंबा लगा है।